कोकुल कोकुलर ऐक्टिविटीस वगैरा भी इसमें होती है। ये बोहोत अच्छी चीज है जिसको हमको प्रोत्साहन देना चाहिए।

वही दिखाया जा रहा है कि इसमे हॉल मे सभी लोग बैठे हुए है। कोई कंपनी के बारे में डिस्कशन हो रहा है और बताए ग्रोथ के बारे में कैसे प्रॉफ़िट करे कैसे क्या होगा कैसे बेनेफिट मिलेगा कैसे कंपनी ग्रोथ करेगी। वो सब चीज इसमे समझाया गया है।

जो टी.वी. सजाई है जिसमें लोग आके बैठेंगे और अपना इंटरटेनमेंट करेंगे और अपना खाना पीना खाएंगे और वो फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते है यहाँ पर आकर।

लोग बाग आके बैठ सके। अपना जो भी फंक्शन हो रहा है उसको आसानी देख सके एण्ड ग्रुप डिस्कशन कर सके उस तरह का उसी टाइप का कुछ लग रहा है इसमें और कुछ फंक्शन होना है इसी की तैयारी चल रही है।

इसमें दिखाया है बिहारी पर्व जिसे कहते है छठ पूजा हम लोग में साल में एक बार मनाया जाता है जिसमें औरतें एक बार सुबह उगते हुए सूरज को और एक दिन दो चौबीस घंटे बाद अस्त होते हुए सूरज को अर्ग देती हैं।

जो कोई भी हो आकर्षिक का दौर है और हैवी वाहन यहाँ से ना आ जा सके जो लोगों को आसानी रहेगी और देखने में अच्छा लगता है।